यह बहुत अच्छी लीची सजा रखी है और सामने फ्रेम बनाकर भी सजा रखी है।

यह एक कमरा है जिसके अंदर बहुत सारी बेंचे रखी दिखाई दे रही हैं और एक जाली भी दिखाई दे रही है।

और बैंचो के ऊपर एक गिलास भी रखा है।

और इसमें मांन्दवारी भी बीच रहा है और पास में इसके और मकान है।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

यह एक बहुत खूबसूरत दुकान है और इस दुकान के अंदर बहुत अच्छा अच्छा समान रखा है।

और इसकी बराबर में भी एक और दुकान है और इसके सामने भी सामान रखा है।

और इस मकान में लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है और नीचे एक बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

और इसमें पिलर भी लग रहे हैं।

और इसके सामने बाइक के भी बहोत खड़ी दिखाई दे रही है।

यह एक रे रेस्ट रूम है और इसमें बहुत सी मशीने रखी है।

और उन कुर्सियों पर गुब्बारे भी बहुत रखे हैं।

यह एक जिम है और जिम के अंदर बहुत समान रखा है।

यह खान शाही बिरयानी और कबाब का होटल है और इसके बराबर साइड में एक होटल और है।

यह बहुत खूबसूरत बेड का डिजाइन है और इसके पीछे कुछ पलाइए भी रखी है।

यह बहुत खूबसूरत टेबल सजा रखे हैं।

और यहां पर पेड़ पौधे भी बहुत खड़े हैं और लोहे की एक तार वार भी हो रही है।